पेड़ भी बहुत सुंदर सुंदर लगे हुए हैं ट्रक भी खड़ा हुआ है और सड़क भी कच्ची है।

यह बहुत ही सुंदर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और यहां आसमान भी बहुत सुन्दर लगा दिख रहा है ब्लू कलर का और यहां बहुत ही सुंदर पेड़ लगे हुए हैं।